पुलिस जा रही है जो काले रंग की बाईक है सामने एक आदमी है जो हरे लाल रंग का बाईक है बगल में एक लड़का जा रहा है सामने से एक ऑटो आ रही है जो हरे रंग की है बगल में शटर लगी है जो हरे रंग की है।

के लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है जिसमें बॉंस लगे हुए है और एक पपीता का पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग की पतियाँ है नीले और सफेद रंग की आसमान है बगल में एक छोटा सा झोपड़ी है।

ये मशीन रखा हुआ है जो लोहे का पूरा बना हुआ है।

एक परदे के ऊपर रखा गया हैम अगल-बगल में छोटे-छोटे पेड़-पोधे लगा है कुछ फूल लगे हुए है जो पीले रंग के है हरे रंग की घास है अगल-बगल पेड़-पोधे है जो हरे रंग की पतियाँ है एक लम्बा सा खम्भा हैं।

आसमान है बगल में टापू है जो उसपे पेड़ लगे हुई है जो हरे रंग की पत्तिया है।

सामने घर है जो खिड़की लगी हुई है और छोटी सी तलाब में पा ये जो पर्दे का रंग सफेद है हम्म नीले रंग कि पट्टी है और अगल बगल एक दो एक गुंबज खड़े हुए हैं।